यह दिख रहा है की यह एक--

इस दृश्य में हमें यह दिख रहा है कि--

ग्राउंड के आस पास बिल्डिंगे भी बनी है।

काले रंग का घोड़ा भी खड़ा है।

यहां पर सामने एक दुकान है।

आस पास हरी भरी हरियाली ही है।